इस इमेज में सामने यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग यहां पर नहाते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर मोटरसाइकल खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है और जहां पर नीचे दो तीन कार खड़ी नजर आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर है बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है और यहां पर शादी का डेकोरेशन चलता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक घड़ी की दुकान दिखाई दे रही है जहां शो केस में हाथ में पहनने की घड़ियां नजर आ रही हैं।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

इस इमेज में यहां पर सामने एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर गमलों में ढेर सारे पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर सामने शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है और नीचे गमले में शो प्लांट्स लगे हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर सामने एक बड़ी से इमारत दिखाई दे रही है और सामने यहां पर पार्क भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर सामने एक घर दिखाई दे रहा है जहां पर खिड़की दरवाजा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और काउंटर पर दो लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है और सामने यहां पर शिवलिंग नज़र आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और सामने बड़ी से इमारत भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर पानी का पाइप पड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर सामने दो गधे दिखाई दे रहे हैं जिनके दो कान और दो आंख नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक पुस्तक की दुकान दिखाई दे रही है सामने एक आदमी चश्मा लगा कर बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर सामने एक दो गाड़ी दिखाई दे रही है और यहां पर सैनिक साइकिल का बोर्ड लगा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं।